जिनमें मनी प्लांट लगा हुआ है।

और एक खंभा दिखाई दे रहा है।

सामने एक मिरर दिख रहा है।

और बहोत सारी सुखी जैसे जट डंडियां जैसी पड़ी हुए हैं।

लड़की ने लेहंगा पहना है जोकि लाल रंग का है और सिर पे चुन्नी रखी पकड़ी है।

जिस पर पानी की बोटल पड़ी है।

सामने टैटू की शॉप है।

ये एक सामने बहुत सारे लोग--

और एक अलमारी पड़ी हुई है।

फ्रिज में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है।